है सामने एक आदमी मोबाइल फोन लेकर खड़ा हुआ है।

सीढियों के सामने एक बोहोत बड़ी इमारत बनी हुई है जिसका रंग गाजरी दिख रहा है।

टाइयों का रंग गुलाबी और काला है और एक बीच से नीले रंग की चटाई भी बिछी हुई है।

ऑफिस में कुर्सी टेबल टेबल के ऊपर एक पुस्तक पेन बॉक्स कैलकुलेटर आदि रखे गए हैं।

मैदान के अंदर काफी सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं।